यह एक दुकान है कपड़ा का इसमें कपड़ा दिख रहा है इसमें आदमी दो है जो कपड़ा खरीद रहा है आपको बैग दिख रहा है बैठने वाला दिख रहा है यहां पर लोहा का स्टुल दिख रहा है।

इसमें लड़की को दिख रहा है जो फटाका फोड़ते हुए दिख रहा है धुआ दिख रहा है बसमान दिख रहा है जो ब्लैक कलर का इसमें बॉल बढ़ते हुए दिख रहा है पोस्टर दिख रहा है इसमें एक लड़का दिख रहा हैजो वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

रोड दिख रहा है रोड पर जो उजला पट्टी दिख रहा हैऔर ऊपर सा हिसा दिख रहा है एलुमिनियम का।

यहाँ पर भीं दिख रहा हैं यहाँ पर लाइट दिख रहा हैं व्हाइट कलर का यहाँ पे ए_सी दिख रहा--

ये एक आदमी हैजो चश्मा पहना हुआ है प ब्लैक कपड़ा पहना हुआ है पीछे इसका दिल है जो लाइट बर रहा है फूट से बना हुआ है ये टेंट टेंट में झड़ा हुआ और यहां पर लग्गी वाला बॉल लगा हुआ है जींस पहना हुआ है मस्त लग रहा।